दुकान हटे दुकान में बहुत सुंदर दुकान बा दुकान के बगल में पोस्टर बा। पोस्टर के पोस्टर के बगल में चिम चिम लोकता लाइट बाटे।